यह फोटो में एक बहुत बड़ी पत्थर की पहाड़ नज़र आ रही है जिसमे एक छोटासा बोर्ड लगा हुआ है जिस पे कुछ लिखा हुआ है।

बसे खड़ी हुई है लोगोने अपने-अपने बैग रखकर सो रहे है जिन्होंने चद्दर ओढे हुए है फैन है लाइट्स जल रही है और पिलर्स पे पोस्टर है।

आस पास गणेश जी की कार्तिक जी की शिव जी की और हनुमान जी की मूर्तिया नजर आ रही है। पीछे पहाड़ वाला सीन दिया हुआ है आगे कुछ लोग खड़े हुए है। पंडित फोटो --

हम्म इन दिस पिक्चर फ़ैक्टरि पिक्चर है जिसमे वर्कर्स दिखाई दे रहे है जो की वर्क कर रहे है सब अलग-अलग वर्क कर रहे है।